इसमे एक पौधा है एक बहुत सुंदर।

घर है आसमान दिख रहा है।

इस मे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं | ड्रेस पहने हैं | एक आदमी हाथ मे मोबाइल लिया हुआ है | वीडियो कर रहा है बल्ब भी जल रहा है |